एक कार खड़ी हुई है सामने की तरफ ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है उस पे उस संभागीय परिवहन कार्यलय लिखा हुआ है पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ नजर आ रहे हैं।

यह एक स्टडी सेंटर है सामने की तरफ इसमें एक गेट नजर आ रहा है साइड में एक विंडो है जिसमें ग्लास लगा हुआ है।